यहीं पे दो लोग खाम कर रहे है और मिट्टी भी है ग्राउंड बड़ा है और सामने प्रमुख ग्रीन--

खेल रहे है उ सबने ब्लू कलर के कपड़े पेहने हुए नीचे मिट्टी है।

यह इमेज एक जिम की है उसमें बहुत सारे जिम के साधन वगैरह है।